ये एक क्लास रूम लग रहा है यहां पर बच्चे बैठते हैं और खेलते हैं।

दो टेबलों का रंग नीला है और दो टेबलों का रंग लाल है।

अ दीवार की दोनो तरफ से ज न उनकी कुछ तस्वीरे लगाई गई हैं।

बेड पर दो तकिये रखे हुए हैं शीट बिछाया हुआ है।

बहोत बड़ा मैदान है य यहां सामने एक जगह है।

ये तस्वीर किसी इमारत के अंदर की है जहां पर कुछ काम चल--

तस्वीर में एक छोटा सा पत्थरों का अ पहाड़ जैसा नजर आ रहा है।

एक बड़ी सी इमारत भी है अअ गोदाम के अंदर बहोत सारे मार्बल रखे हुए हैं।

एक बॉडीगार्ड भी है इस इमारत में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक जगह है जहां पर अंअं बीच में जमीन पर एक फैन रखा हुआ है।

सड़क पर अ कुछ लोग दो तीन लोग चल रहे हैं।

सड़क के एक तरफ से कुछ पेड़ लगे हुए है।

ये तस्वीर किसी इमारत के अंदर की है जहां पर एक बॉक्सिंग बैग लटका हुआ है।